यहां पर एक जगह दिखाई दे रही है और इधर ।

फोनों की दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम लुफेरा है वह यह काफी अच्छी दिखाई दे रही है आप बताएं आपको कैसी लग रही है यह दुकान बहुत अच्छी मुझे तो लगी।

आई होप सो ये किसी हस हॉस्पिटल की फार्मेसी की ली गई तस्वीर है ये--

एक शख्स खड़ा हुआ मेडिसन बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है ये बात बिल्कुल अच्छी है ठीक है बहुत अच्छी तस्वीर है ये मुझे बहुत अच्छी लगी अब --

इनकी दुकान में से लोग चीजें बाए कर रहे हैं किताबें बाए कर रे हैं जो दुकानदार चीजें जेल कर रहा है।

यहां पे ए_सी लगा हुआ है --

ए सलवार कमीज पहनी हुई है वाइट कलर की और ये योगा कर रहे हैं इनमें औरत भी है मर्द भी है।

कि जी बहुत ही पुराना और न्यू --

ये किसी शादी मिलेगी किसी औरत की पीक है।

यह किसी गार्डन में से लई गई पिक है यहां पे मेरा ख्याल है और स्नो पड़ी हुई है यहां पर काफी कलर कलर ।

और उसके कपड़े पड़े हुए हैं फुटबॉल पड़ा है यहां पे ।

यह किसी कैफे की ली गई तस्वीर है और यह ।

सफाई का बिलकुल भी नहीं ख्याल इसने किया बहुत ही गंदी दुकान है।

मैं नहीं जानता ये कहां पे है कहां पे नहीं है आपको पता है तो बताएं--

जिसका कलर वाइट है यह मैं नहीं जानता कि कहां पे है कहां पे नहीं ।

ये किसी स्कूल में फंक्शन के दौरान ली गई तस्वीर है यहां पे काफी सारी गर्ल्स खड़ी हुई हैं।

ये पता नहीं कहां पे वाकई है मुझे नहीं पता इसका--

यहां पे लोग अपनी कर सकते हैं।

लेकिन मुझे नहीं पता यहां पे एक मेज़ पड़ा हुआ है एलसीडी लगी हुई है।

ये किसी सब्जी वाली दुकान की दुकान की ही पीक गई है ये पिक बहुत ही अच्छी लग रही है यहां पे--

यह पिक है किसी स्पोर्ट हुआ है स्पोर्ट डे की ली गई पिक है।

यह किसी मॉल के बाहर से ली गई तस्वीर है यहां पे ।